टाईल्स बनी के जिन्स विन्स पहिन हेन लुगामन पहिन हेन घड़ी मन पहिन हेन मैट मन बिछाई हेन औउर खिड़की मन बड़खा-बड़खा के --

ए जो बॉडी बन जही आइचमे ओ गाँजी और पेनथियाँ मन पहिन हे अउर टायर बनिके बोर्ड बनिके कांच बनिके अउर चप्पल भी नहीं के पहिनोत--

फिर ने जूता मन कोन कोन पहने हे कोन कोन गद्दा में बेठे हे कोन-को बाल्टी म भी दिखत हे फिर आदमी मन मछरी काटत--

एक ठो तीजा में और इहाँ सब केला मन ग-गन्ना और आदमी म ने भी आई है गुब्बारा फुग्गा मन के टेंग दिए हन।

सीढ़ी ने गच नगर बंद फिर का का छत्तीसगढ़ी में लिखेल हे टियर का कार फिर का का दिखत हे फिर इन्हें पथर दुगली मन भी केठन बॉडी में भी दिखत हे न फिर जूता मन कोन कोन पहिन हय।

खिड़की बन भी गे दूरा बडखास घास उगे फिर इने लारियु मन अलग ही ह फिर टयूब लाईट मन भी के--

दो झन आदमी बॉडी बनात हे फिट्नेस फिर ]

सीडी भी के कमेरा भी के पंखा भी के ए_सी कूलर फिर का का बन बगराई के एक ठने फिर घांस भूसा दिखत हे फिर टी बी मन भी के का का चीज--